मैं देख पा रही हूं यहां एक मकान है।

और एक तार का गांछ भी है।

मैं देख पा रही हु यहां एक पोखर है।

मैं देख पा रही हूं यहां एक स्विमिंग पूल है।

और मंदिर के नीचे दुकान भी है।

और बगल में बड़ा बड़ा बिल्डिंग भी है।

और ऑफिस के अंदर एक आदमी बैठा हुआ है।

और एक पोस्टर भी लगा है जिसमें--

और कोई बैठे हैं तो कोई खड़े हैं।

और टावर भी है दूर दूर--

एक फैन भी लगी हुई है।

और एक सैंटा बने हुए हैं।

और उसके बाहर भी समान डब्बे में कुछ बहुत कुछ रखा हुआ है।

मीट का दुकान है उसके बगल में भी दुकान है।

और तीन चार रूम भी है।

और बादल भी छाए हुए दे--